और एक गाय भी और दो रिक्शा भी--

और मूर्ति के साथ एक त्रिशूल भी रखा हुआ है।

और आलू प्याज और लहसन भी रखा हुआ है।

यह दो मूर्तियां हैं जिसमें दोनों जॉइंट करी हुई है।

यहां बहुत सारे मग कप नजर आ रहे हैं।

और बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

और नाई का सामान भी रखा हुआ है।

और दो लोग भी नजर आ रहे है।

और एक कार भी खड़ी हुई है।

यह एक हीरो का शोरूम है।

और तीन कुर्सी भी रखी हुई है।

और एक ए_सी भी रखी लगी हुई है।

और इस पर एक छज्जा भी लगा हुआ है।

और बहुत सारे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

और तीसरे आदमी का हाथ नजर आ रहा--

और एक ए_सी भी नजर आ रहा है।

और बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

और दो औरतों के पैर भी चमक रहे हैं।

यह बहोत सारे सोफे हैं।

और क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

और ये मैदान में खेल रहे हैं।

यह एक बच्चों का स्कूल है।

और लीची भी लग रही है।

और दो बोतले भी रखी हुई है।

और दो दिन बल्ब भी जल रहे हैं।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

एक डस्टबिन भी नजर आ रहा है।

यह एक लड़कियों की फोटो है।

और दो लाइट भी नजर आ रही है।